एक बहुत बड़ा हाल है हॉल का कलर सफेद हैउसमें एक पंखा लगाया गया है खिड़की में शीशा लगाया गया है।

सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है बिल्डिंग में शीशा का काम किया गया है।

मौसमी टंगे हुए रखे हुए हैं उसके बगल में बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया हुए हैं और रोड पे एक गाय है ।

ये बहुत सुन्दर सा घर हैं। अह लाइट से सजावट की गई हैं।

ग्राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चे है एक बच्चे ने रेड टी-शर्ट पहना है उसके हाथ में बैट रखा हुआ है।

कांच का दराज है उसमें बहुत सारे चॉकलेट रखे हुए हैं।

एक बड़ा सा जनरेटर भी रखा गया है उसके सामने एक कलर का डब्बा रखा गया है।